जिसमें काफी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है।

गेट पर चर्च का निशान भी बना--

इस ढाबे पर एक बड़ा पोस्टर भी लगा।

यह फोटो किसी कपड़ों की दुकान के सामने से लिया हुआ है।

यह गाड़ी वाइट कलर की है।

और इस पर सरिये के जाल बन चुके हैं।

और एक सड़क के बीच में डिवाइडर दिखाई दे रहा है।

जो लंबी लंबी लोहे के रोडों को नीचे फेंक रहा है।

एक सिलेंडर भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

काफी सारे ज्यादातर लेडीज शूज दिखाई दे रहे हैं।

ली व्यक्ति जैसे स्टैचू बनाए गए हैं।

इस फोटो में सामने की साइड दो ए_टी_एम दिखाई दे रहे हैं।

और पीछे की साइड कुछ बड़े पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

जिसमें सामने कि ओर कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

और एक लड़का इधर को ही आता दिखाई दे रहा है।

यहाँ धरती पर सफेद कलर की टैल बिछी हु--

और पीछे कुछ बड़े पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

यह फोटो किसी डैम से खड़े होकर लिया गया है।

यह पानी कुछ गंदा सा लग रहा है।

सामने की और कुछ बड़े पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

जिन पर कुछ व्यक्ति बैठे दिखाई दे रहे हैं।

और ऊपरली साइड कुछ गुब्बारों से सजावट भी की गई है।

जिस पर लॉन्ड्री लैब लिखा हुआ है।

पीछे की साइड एक खाली गैलरी भी दिखाई दे रही है।

फोटो में एक व्यक्ति इ इन बच्चों की वीडियो बना रहा है।

औ कुछ बच्चे और कुछ बच्चियां डांस कर रहे हैं।

और कुछ दो बाईकें भी खड़ी दिख रही हो।

इस फोटो में एक आइसर कंपनी का शोरूम दिखाई दे रहा है।

यह फोटो किसी परचून की दुकान से लिया गया है।

धरती पर भी कुछ सामान फैला पड़ा है।

जिस पर एक लंबा पीले कलर का एक बैनर लगा है।

यह फोटो किसी शादी विवाह से लिया गया है।